और अ मंदिर को चार पिलर है और अ मंदिर के ऊपर कुछ झंडे लगे हुए है और अ आजू बाजू में कुछ खाली जगह है और अ हरि ग्रास दिखाई दे रही हैं । धन्यवाद ।

इस चित्र में आसमान दिखाई दे रहा है और काफी लंबी चौड़ी बिल्डिंग दिखाई दे रही है।

म एक सफेद आसमान दिखाई दे रहा है कुछ पेड़ पौधे दिखाई दे रहा है और घर पर दिखाई दे रहा है और एक दिखाई दे रहा है।

और आ कुछ पेड़ दिखाई दे रहे हैं और आ कुछ पेड़ की टहनियां नीचे लटकी हुई दिखाई दे रही है धन्यवाद।

शाम का समय लगता है और ऊपर कुछ हरे कलर का बोर्ड है और बोर्ड पर कुछ नाम लिखा है वुडलैंड करके धन्यवाद।

और आ इस दुकान में एक कांच का दरवाजा लगा हुआ है और बाहर में एक बाइक खड़ी दिखाई दे रही है। रोड है धन्यवाद।

इस चित्र में एक अ मंदिर दिखाई दे रहा है | नीला आसमान दिखाई दे रहा है ।

इस चित्र में एक मंडप दिखाई दे रहा है। और मंडप के अंदर कुछ परदे वगेरा लगे हुए है और आ परदे के ऊपर कुछ बैलून्स चिपकए हुए दिखाई दे रहे हैं।